पहले कोई अन्य तरीके का चौक है जहाँ पर--

है जिस सड़क पर एक शुतुर्मू मु मुर्ग --

इस दिन भोलेनाथ की पूजा होती है। यह पर्व --

पर यह एक तालाब है जिस तालाब में यह बहुत सारी मछलियाँ तैरती --

कोई भी दुश्मन को देखा जाये और वह इसको --